एक बड़ा सा बिजली का खंबा है।

हरे रंग की कालीन भी बिछाई हुई है।

रंग लाल सफेद और पीला है।

प्रवेश द्वार कांच का बना हुआ है।

तस्वीर में एक कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

का फर्श बिल्कुल साफ है।

यहाँ बहुत सारे लोग हरे तथा लाल रंग के कालीन पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग हेलमेट भी पहने हुए हैं।

जिसके पे एक कार लगी हुई है और इसका रंग सफेद है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

खंभे में लाइटें भी जल रही हैं।

दरवाजे एवंम खिड़कियां कांच की बनी हुई है।

एक छोटा पंखा भी दिखाई दे रहा है।

दीवार का रंग हल्का पीला है।

वॉल पे एक पेटी भी रखी हुई है।

व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो लाल रंग की टी_शर्ट पहना है और लाल रंग की टोपी पहना है।